सामने की चेयर पर आदमी बैठा है उसके मुँह पर फेसिअल हो रहा है।

सामने एक शो रूम दिखा रहा हैं।

यहाँ पे एक लौ जल रही हे जिसके पास में फूल रखे हुए है।

एक रोड लगी हुई है और जहाँ की जो फर्श हे वो सलेटी रंग की है।

वो बैगनी और गुल नारंगी रंग की हैं जिसके पास में कई सारे मकान हैं खम्बे लगे हुए हैं।

सामने एक जमीन दिख रही हैं जो काले और हरे रंग की हैं जिसके पास में बाउंड्रिया हैं।

फिर पास में एक प्लास्टिक की बॉटल रखी हुई है कुछ अख़बार भी रखे हुए है पास में इसमें डलिया है।

यहाँ पर एक घर दिख रहा हे जो स्लेटी रंग का हे जिस पर तार लगे हुए हे।

जहाँ पे दो लड़कियां हैं एक बैटिंग कर रही हैं और एक कीपरिंग कर रही हैं।

पानी का रंग जो है वो मटमैला हो रखा हैं।

जिसके बाहर शीशा लगा हुआ है जिस पर वेला लिखा हुआ हैं।